एक मंदिर है अंदर कुछ दिखा दिख रहा है और अच्छे कलर में पुताया है गोल्डन में है एक--

बहोत सारी ईंट है और वहाँ कुछ सुखा घास है।